टीचर्स हैं। बहुत सारा टीचर्स ख --

बहुत ही काला दिखाई दे रहा है नारियल का उ पेड़ है। न --

दुलहिन है लड़का है बहुत सारा आदमी सब है।

पुलिस जुत्ता पहना है चप्पल पहना है।

नीला सूट पहने हुए है। दिखने --

कंधे पर चदरा रखा है हाथ भीर।